स्टेज पर दुल्हा और दुल्हन दिखाई दे रहें हैं दुल्हा-दुल्हन के पीछे एक गद्दी रखी हुई है और इ स्टेज काफी अच्छा सजाया गया है।

इनके पास एक लड़का बैठा हुआ है जिसने क्रीम कलर की शर्ट पहनी है और उसके पैर में चपल है पीछे पत्थरो में नीला कलर में पुता हुआ है और ऊपर फाउंटेन बेह रहा है।

ये रेतीला और हरयाली वाला मिला जुला मैदान हैकाफी दूर तक हरयाली दिखाई दे रही है छोटे-छोटे पेड़-पौधे लगे हुए है।

मेरे टेबल के सामने काफी सारा सामान रखा हुआ है जो शायद उन बच्चों को बांटने के लिए रखा है किनारे की तरफ दो महिला खड़ी है।

लड़की ग्रीन और लाल कलर की साडी पहनी हुई दिखाई दे रही है जिसने माथे पर चंदन लगाया हुआ है और बीच में लाल टिका लगाया हुआ है।

शोरूम का गेट भी से सजाया गया है जो की गुलाबी और सफ़ेद कलर के है ।

काफी डेकोरेटेड प्यारा सा लाल कलर का रिक्शा दिखाई दे रहा है।

हमे गेट के बाहर एक लाल कलर का इ-रिक्शा दिखाई दे रहा है इ-रिक्शा के इस तरफ एक व्यक्ति है जो उस तरफ खड़ी महिला को गाड़ी की चाभी दे रहा है और महिला ने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है।